कुछ व्यक्ति खड़े हुए हैं ब्लू पेंट को पहने हुए ब्लैक --

बड़े बड़े घर दिखाई दे रहे हैं व्हाइट कलर की बाउंड्री करी हुई दिखाई दे रही है।

गाड़ियां धूप में खड़ी हुई दिखाई दे रही है वृ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे हैं एक आदमी जा रहा है।

धूप बहोत तिखी दिखाई दे रहीं हैं टाइले लगी हुई हैं ग्राउंड --